साथ में यहां पेर और जंगल भी बहोत सारा दिखाई दे रहा है।

उपर मैं एक फैन और भी लगाके हैं।

फोटो में हमको एक लड़का दिखाई दे रहा है फोन पकड़ के--

पीछे छे मिस्त्री दिखाई दे रहे है।

इसमें तावेल रखे हैं दोनों में--

कार का नंबर सेवन थ्री नाइन थ्री है।

मे भी एक वाइट कलर का गाड़ी है।

यह पीछे बहुत सारा बाइक भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हमको एक छोटा साइज स्टेज दिखाई दे रहे है।

स्टेज का अंदर में बहुत सुंदर से है डेकोरेट करके है।

राइट साइड में और एक ठो गाडी भी रखी है।

गाड़ी का शीट भी निकाल के रखा हुआ है।

साथ में टिना भी लगा के है।

ज्यादातर बॉक्स व्हाइट कलर का है।

यहां फ्लैग भी लगा के है।

बाइक इसु स्कूटी गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ वायर भी दिखाई दे रहा है।

डोर का के एक डोर मेट भी बिछा के है।

यहां भगवान का फोटो भी रखा हुआ है।

यह फोटो शायद किसी होटल का रूम का फोटो है।

यह फोटो में हमको बड़ा वाला बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहां एक ठो लड़का भी खड़ा दिखाई दे रहे हैं।

ये फोटो में हमको स्विमिंग पूल दिखाई दे रहे हैं।

ये फोटो में हमको बहुत सारा मछली बिक्री करते हुए दो लड़की दिखाई दे रहा है।

पीछे लंबा सा एक घर दिखाई दे रहा है।

पीछे कलरफुल वाला कारपेट बिछा के है।

ये फोटो में हमको एक ब्रिज दिखाई दे रहा है उसमें आदमी चल के जा रहा है।

यहां दो बाइक और एक गाड़ी भी रखा हुआ है।